एक बोर्ड भी लग रहा है जिसमें कुछ लिखा हुआ है कुछ खुल्द रखे हैं कुछ बिस्कुट के पूओंचेस रखे हुए नीचे डिब्बे रखे हैं देखने पर एक डस्टबिन रखा है जिसमें कचरा पड़ा हुआ है और भी सामान पड़ा है।

यहाँ पर जमीन दिखाई दे रही है पर कुछ लोग बैठे हैं यह मछलियां बेच रहै हैं कुछ मछलियां डिब्बे में पड़ी है कुछ मछलियां बोरी पर रखी हैं एक आदमी है जिसके पास में ट- टोकरी रखी है।

लाइटे दिखाई दे रही है लाइटे जल रही है और भी लोग दिखाई दे रहे है जो ये काम कर रहे स्टील के कुछ लिखे हुए दिखाई दे रहे है सामने एक दिखाई दे रहा है जो नीले रंग का है एक लड़का है जिसके सर में मास्क लगा र--

यहा पर एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे मे एक मशीन लगी हुई है मशीन के ऊपर कुछ रॉडे लगी हुई है तार दिखाई दे रहे है सामने की तरफ एक अ लाइट का बोर्ड दिखाई दे रहा है पाइप जा रहे है एक बडा सा टीन का कंटेनर रखा हुआ है।

यहां पर तीन-चार लड़कियाँ खड़ी हुयी हैं जो नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं वह एक स्टेज पर खड़ी हुयी हैं स्टेज पर कुछ कागज फैले हुए हैं ऊपर की तरफ--

यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है नदी के बिच में से एक पूल जा रहा है पूल पर बहुत सारे लोग जा रहे है नदी में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं।

और बिच में सडक भी दिखाई दे रही है। पीछे की तरफ देखने पे यहाँ हरियाली ही हरियाली दिख रही है। खेत दिखाई दे रहे है । यहाँ पर मट्टी भी फैली हुई है। और घर भी बने हुए--

यहाँ पर एक दीवार दिखाई दे रही है दीवार जो है सफ़ेद रंग की है उसपे नीले और हरे रंग से पट्टीया जा रही है पीछे यहाँ पेड़ उगे हुये है आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक मैदान दिखायी दे रहा है मैदान में ईटों का फर्श बना हुआ है सामने की तरफ एक मंदिर दिखायी दे रहा है जिसके आगे कुछ लोग बैठे हुए हैं इस पर सफेद रंग घुरा है।

चारों तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है छत्- घर दिखाई दे रहा है घर के ऊपर भी लोग खड़े हैं घर-घर पर निर्माण का काम चल रहा है जहां पर बलिया लगी हुई हैं पीछे देखने पर बड़ी हरियाली छाए हुई हैं।

यहां एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के बीचो बिच एक में गेट लगा हुआ हैजिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है सामने के तरफ सफ़ेद कलर दीवार दिख रही है।

एक जिम का दृश्य है जिम में कुछ महिलाएं चटाई पर बैठी हुई है चटाई जो की योगा कर रही है सामने की तरफ शीशा दिखाई दे रहा है।

सफ़ेद दिवार दिखाई दे रही है पीली पत्तियां जा रही है दीवार पर कुछ लिखा हुआ है पीछे की तरफ बिजली का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है और भी पिक्चर्स लगी हुई है यह महिलाये योगा कर रही हैं।

यह एक फैक्ट्री का दृश्य हैं। जिसमें बड़ी-बड़ी मशीने लगी हुई हैं। मशीनों के पास दो लोग खड़े हुए हैं। वह कुछ कर रहे हैं।

गमला दिखाई दे रहा है जिसमें हरे रंग का पेड़ लगा हुआ है पीछे की तरफ रेलिंग्स दिखाई दे रही है टी-शर्ट पड़ा हुआ है टी-शर्ट पर बड़े-बड़े पाइप लगे हुए हैं ।